सामने मुझे नीचे कुछ घर दिखाई दे रहे है।

सामने मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो पर कुछ महिलाएं दिखाई दे रहे हैं।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

और सामने मुझे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है और मुझे एक--

मुझे इस फोटो पर एक सड़क दिखाई दे रही है।

और मुझे ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने मुझे कुछ छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक नदी दिखाई दे रही है।

प्लेटफॉर्म पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दे रही है दुकान के सामने मुझे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं।

मुझे इस फोटो पर सामने एक कार खड़ी दिख रही है।

उनके बैठने के लिए बम्बू लगे दिख रहे है।

सामने मुझे एक गार्डनिंग एरिया नजर आ रहा है।

वहा लोग मुझे सामने मजदूर जैसे दिख रहे हैं। सामने मुझे कुछ काम होता नजर आ रहा है।